पेट्रोल पंप देखिए ईंटा सोलिंग हुआ है नीचे। कितना सुंदर लग रहा है देखने में।

पता ने क्या लिखा हुआ है इंद्रदेव महादेव मंदिर लिखा हुआ है कितना सुंदर लग रहा है देखनें में देख सकते है और यहाँ पर सीढ़ी देखिए कितना लंबा सीढ़ी है।

यहाँ देख देख सकते हैं। देखने का सीन है यहाँ पे। बोहोत अच्छा लग रहा है।

और ये देखिये फील्ड कितना हरा-भरा देखने में यहां पे ढेर सारा साइकिल लगा हुआ है देख सकते है कितना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है देखिये और गेट भी इसका कितना अच्छा लग रहा है पता नहीं वहां पे क्या लिखा हुआ है दिखाई नहीं देता।